यहां पर एक पॉम का पौधा भी है।

यहां हर किस्म की किताबें मिल जायेंगे।

ह हल्का बैंगनी रंग के कपड़े में दुकानदार बैठे हुए हैं।

जहां बहुत सारे लड़के वर्कआउट कर रहा है।

ये सैलून साफ सफेद रंग का है।

टैंक के नीचे एक बाल्टी रखा हुआ है।

और जिम में मुझे फैन और ए_सी भी दिख रहा है।

और सामने कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहा है।

दीवार की रंग सफेद है और खिड़की शीशे के है।

यहां मुझे एक मंदिर दिख रहा है।

और इस कॉलोनी का रास्ता काफी साफ सुथरा लग रहा है।

और एक असुर भी है।

और वहां पंडित जी पूजा करते हुए दिखाई दे रहा है।

यहां वेलकम बैक टू स्कूल लिखा हुआ है।

और बगल वाले गाय भी काले रंग का है।

ये एक पोल्ट्री फार्म है।